उसके पीछे हरा भरा घास दिखाई--

पेड़ पौधे भी --

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

का टाइम लग रहा--

दिखाई दे रहा है।

काफी भीड़ भी दिखाई--

कपड़ों और जूते चप्पल की दुकान सजाई गई है।

उसके किनारे ए_सी लगी है किनारे पे पेड़--

के अंदर लोग खा रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

उसमें कुछ लिखा हुआ है।